सामने में मुझे चार लोग दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर एक हॉल से लिया गया है।

इस हॉल के सीलिंग पर बहोत सारा बलूंस भी टंगा हुआ है।

हर एक सेल्फ पर अलग अलग सामान रखा हुआ है।

ये गाड़ी को फूलों से सजाया गया है।

मक्के के सामने सुखे सुखे दाले भी दिखाई दे रहा है।

सामने में मुझे एक आदमी चेयर पे बैठा हुआ दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे सामने खाली जगह दिखाई दे रहा है।

अंदर के सेल्फ पर सारे सेल्फ पर समान रखा गया है।

कोने में शेल्फ भी बना हुआ है।

ये तस्वीर एक दुकान के अंदर से लिया गया है।

यहां टाइल्स भी लगाया गया है।